ये एक अन्डर कन्स्ट्रक्शन बिल्डिंग की है इस बिल्डिंग के पिल्लर भी खड़े दिख रहे है।

साइड मे एक हरा भरा जंगल दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक छोटा सा टापू भी दिख रहा है।

एक दुकान का शटर बंद है उसी के बगल वाली दुकान के अंदर काफी समान रखा हुआ दिख रहा है दुकान के बाहर कुर्सियाँ और गाड़ी दिख रही है।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

नदी के राइट साइड काफी सारे बड़े और घने पेड़ दिखा रहे है। यहाँ पर एक सुखी जमीन भी दिखाराइ रही है।